नमस्कार installing और running gmsh पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
पूर्वापेक्षा के रूप में यूजर को mesh का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं ऊबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1204 और gmsh वर्जन 285 का उपयोग कर रही हूँ
मैं gmsh के बारे में आपको बताती हूँ gmsh एक स्वचालित 3d finite element mesh generator है जिसमें प्री और पोस्ट प्रसंस्करण सुविधा शामिल है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है
यह openfoam जैसे कि blades aerofoil के blockmesh यूटीलिटी के बजाय gmsh में complex geometries बनाने में फायदेमंद है openfoam थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि gmsh से mesh इम्पोर्ट करने का समर्थन करता है
मैं आपको दिखाता हूँ कि gmsh को संस्थापित कैसे करना है gmsh को सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके भी संस्थापित कर सकते हैं
मैं आपके लिए सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर खोलती हूँ यह आपको आपका पासवर्ड पूछेगा अपना पासवर्ड टाइप करें
सर्च बॉक्स में gmsh टाइप करें और gmsh के सामने चैकबॉक्स पर क्लिक करें और mark for installation पर क्लिक करें apply पर क्लिक करें
फिरapply पर क्लिक करें इसमें कुछ समय लग सकता है आपका gmsh अब संस्थापित हो गया है
वैकल्पिक रूप से आप gmsh को gmsh वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं मैं ब्राउजर खोलती हूँ
एड्रैस बार में टाइप करें
download के लिए नीचे स्क्रोल करें औऱ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार current stable release चुनें मैं linux 64bit चुनुँगी save file पर क्लिक करें और ok दबाएँ
डाउनलोड पूरा होने पर downloads फोल्डर पर जाएँ
यहाँ आप tar फाइल देख सकते हैं इस फाइल को एक्स्ट्रैक्ट करें एक नया फोल्डर बनेगा
फोल्डर खोलें bin पर जाएँ और gmsh आइकन पर क्लिक करें
आप gmshस्टार्ट स्क्रीन देख सकते हैं अब हम gmsh का उपयोग करके एक क्यूब घन बनायेंगे
यहाँ आप क्यूब देख सकते हैं जिसकी साइड्स की भूजाएँ 1 यूनिट की हैं
gmsh पर वापस चलते हैं बाईं ओर पर आप geometry mesh और solver के साथ module tree देख सकते हैं
geometry >> elementary entities पर जाएँ add पर क्लिक करें point पर क्लिक करें एक नया विंडो प्रदर्शित होगा
0 0 0 के साथ शुरू होने वाले x y और z निर्देशांक प्रविष्ट करें और एंटर दबाएँ
दूसरा निर्देशांक 1 0 0 प्रविष्ट करें और एंटर दबाएँ तीसरा निर्देशांक 1 1 0 प्रविष्ट करें और एंटर दबाएँ चौथा निर्देशांक 0 1 0 प्रविष्ट करें और एंटर दबाएँ
इसीतरह पोजिटिव zdirection के लिए प्वाइंट 0 0 1 के साथ शुरूआती निर्देशांक जोडें और एंटर दबाएँ शेष तीन निर्देशांक प्रविष्ट करें और विंडो बंद करें
मैंने सभी आठ निर्देशांक प्रविष्ट कर दिए हैं प्वाइंट्स को मूव करने के लिए माउस के राइट क्लिक का उपयोग करें
आप सभी 8 निर्देशांक को प्वाइंट के रूप में देख सकते हैं
अब straight line पर क्लिक करें यह start point के लिए पूछेगा पहला प्वाइंट चुनें
यह एक end point के लिए पूछेगा end point चुनें
दो प्वाइंट्स के बीच एक लाइन बनेगी इसीतरह सभी प्वाइंट्स को जोडें
abort करने के लिए q दबाएँ
अब हम क्यूब के फैसेसअग्र भाग को परिभाषित करेंगे plane surface पर क्लिक करें यह surface boundary के लिए पूछेगा
सबसे पहले निचले फेस के किनारों को चुनेंआप देखेंगे कि किनारे जिनको हमने चुना है लाल रंग में बदल जाते हैं
यह hole बाउंड्री के लिए पूछेगा यदि कोई है तो चूँकि हमारे पास बाउंड्री में कोई भी hole नहीं है इसलिए चयन समाप्त करने के लिए e दबाएँ
आप देखेंगे कि फेस डैस सेंटर लाइन के साथ दिखाई देगा अब top face को परिभाषित करते हैं
इसीतरह शेष फेसेस को परिभाषित करें मैंने सभी फेसेस को परिभाषित किया है abort के लिए q दबाएँ
अब हम क्यूब की वॉल्यूम परिभाषित करेंगे यह volume बाउंड्री के लिए पूछेगा
कोई भी सर्फेस बाउंड्री चुनें और चयन समाप्ति के लिए e दबाएँ
एक पीला डॉट क्यूब के केंद्र में दिखाई देता है जो वॉल्यूम को दर्शाता है abort के लिए q दबाएँ
अब फिजिकल ग्रुप को परिभाषित करेंगे जो कि geometry से openfoam में एक्सपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जायेंगे
physical groups >> add पर जाएँ और surface पर क्लिक करें
पहले फ्रंट सर्फेस को चुनें और चयन समाप्त करने के लिए e दबाएँ बैक सर्फेस चुनें और चयन समाप्त करने के लिए e दबाएँ
इसीतरह शेष सर्फेस को चुनें मैंने सभी सर्फेस को चुन लिया है abort के लिए q दबाएँ
अब हम फिजिकल volume को परिभाषित करेंगे volume पर क्लिक करें यह volume के लिए पूछेगा क्यूब के केंद्र में पीले डॉट पर क्लिक करें
पीला डॉट लाल रंग में बदलेगा चयन समाप्त करने के लिए e दबाएँ abort के लिए q दबाएँ
हमारा क्यूब पूरा हो गया है अपने कार्य को सेव करते हैं
file >> save as पर जाएँ हम अपने फाइल को cubegeo नाम देंगे
ध्यान दें कि यहाँ geo का अर्थ geometry के लिए है ok पर क्लिक करें फिर ok पर क्लिक करें
इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में आते हैं नियतकार्य के लिए gmsh में अन्य साधारण geometry जैसे कि सिलेंटर sphere बनाएँ
इस ट्यूटोरियल में हमने सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर और वेबसाइट का उपयोग करके gmsh को संस्थापित और रन करना सीखा gmsh का उपयोग करके क्यूब बनाया
यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर देख सकते हैं
हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spokentutorialorg पर लिखें
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद